जो काफी बड़ी है। बिल्डिंग पर वाइट कलर पुता हुआ है।

कार दिखाई दे रहे हैं। पिलर --

इस पिक्चर में एक गाड़ी दिखाई दे रही है जिस --

मकान के पास में दो टंकिया रखी हुई हैं जो --

नदी के पास कोई नहीं हैं। छोटे-मोटे पत्थर डले हुए --

उन पर लाइटें लगी हुई हैं। एक --

सामने बहोत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

दो लोग इसकी ओर जा रहे हैं। सीढ़ी चढ़ रहे हैं। सीढ़ी दिखाई दे रही हैं।

येल्लो वाइट कलर के फूल लगे हुए हैं।

बट तालाब काफी बड़ा है इस --

एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिस --